और ऊपर पे आदमी बैठ जाते हैं क्राउड भी प्रशासन वाला भी पुलिस वगैरह सारा चीज़ यही पे है और यहाँ पे क्राउडेड जगह बोहोत है। क्यो की बोहोत ही सारे आदमी जगाने --

और अंकल आंटी लोग आते है सारे बुजुर्ग ए लोग आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैं ऐसा करुँगा की आप लोग भी आएं एक बार द द घूम के जाएं।

जो की हमारे सरकार गवर्नमेंट के थ्रू ये सब फण्ड पास किया जाता है जो की बुजुर्ग आदमी लोग को खिलाया जाता है ।

क्लॉस के बुक बगैरा मिलते हैं एन.सी.ई.आर.टी. आर.एस. अग्रवाल जितना भी फैसिलिटी की बुक है सारे अच्छे और इस दुकान बहुत ही अच्छे-अच्छे आदमी आते हैं।

जो की यहाँ पे बुक लेते है और या दुकान मोड़ के पास है थोड़ा मोड़ पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है इसलिए दुकान साइड में है और इस दुकान पे हम जैसा खोजेंगे वैसा ही मिलता--

कि बोहोत ही मेहनत करते मछली बेचने में देखिए दोस्तो यहाँ पे आदमी की भीड़ चढ़ कर बल्ब लगाए गए हैं दोस्तो यहाँ पे चार आ चार वर्कर काम --